तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमें एक बड़ी सी चट्टान दिखाई दे रही है पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है आस-पास हमें कोई दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक ने फोटो खिंच क रहा है जो कि काली शर्ट ने पहना है यहाँ पर हमे छोटे-बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे यहाँ पर हमे पानी भी दिखाई दे रहा है पहाड़ पे हमे कुछ झाड़ और पौधे भी दिखाई दे रहे ग्रासेस भी दिखाई दे रही है।

जो की खुला आसमान दिखाई दे रहा है आस-पास झाड़ पौधे दिखाई दे रहे है यहाँ पे हमें मंदिर के ऊपर झंडे दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें सीढ़ियों का कलर भी अलग-अलग दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे हमें एक झंडा दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें एक स्कूटी और एक बाइक दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें कुछ लकड़ियाँ भी दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें बिजली का तार दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाइट दिखाई दे रहें हैं पोल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक दरवाज़े पर दो लोग खड़े दिखाई दे रहें हैं दरवाज़े का कलर ब्राउन दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें पर्दा दिखाई दे रहा है।

बैनर लगा दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें खिड़की दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें दुकान के अंदर कुछ सामान दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें स्टूल दिखाई दे रहा है।

लाल रंग का बैग लिए गाड़ी युवक चला रहा है यहाँ पे हमें एक लाइटें दिखाई दे रहीं --

यहाँ पे हमें झाड़ पोधे भी दिखाई दे रहें यहाँ पे हमें पत्थर दिखाई दे रहें यहाँ पे हमें कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं या --

यहाँ पे हमें एक छोटी दुकान दिखाई दे रही है जिसके बाहर हमें तीन लोग दिखाई रहे हैं यहाँ पे हमें सड़क के पास में और भी कुछ झाड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं --